कार है बाल्टी है उधर साइड में फोम वोम है पांच गो दवाल है।

एक बर्तन में या पतीला में होगा ढेर सारा आलू।

विन मिरर भी लगा हुआ है।

और बोहोत सारा आदमी ओदमी है का भवन टाइप का बना हुआ है नीचे ऊपर उं पूरे बगीचा भी है साइड में।

पाँच आदमी है ठरा एक ले-लेडिज है।

पाँच से छे टेबुल लग रहा है। वहाँ यहाँ से वहाँ तक है।

बहुत सारे अपने-अपने घाट पे खड़े हैं बहुत ही अच्छे

यहाँ पे हमें एक लड़का दिख रहा हैं जो पानी पी रहा हैं पीछे में बोहोत बड़े पेड़ दिख रहे हैं वृक्ष दिख रहे हैं बोहोत अच्छा नजारा दिख रहा हैं ये लड़का यहाँ पे नीचे में यहाँ पे इसके ऊपर में आ के पानी पी रहा हैं।